ये चित्र म हमते य नदी दिखेण लगी जेक किनार फणा हमते कुछ मंदिर घाटन दिखेण लग्यां जो मणा हमते किनारा म बड़ी बड़ी सीढिन दिखेण लगी जुबी से जाण लगी एंच पणा कुछ छोटा छोटा मंदिरन दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हम तें सड़की किनारा कुछ गाड़ी बाइक जन दिखेण लगीं जों का किनारा बिटि हम तें एक बड़ी इमारत दिखेण लगीं।

ये चित्र मा हम तें इमारत का भितर एक बड़ु कमरा दिखेण लग्युं ज़ख भितर हम तें द्वि बड़ी बड़ी बाइक दिखेण लगीं जु दिखेण सी बुलट छन लगण लगीं और उं पर --

अर एक शिव भगवान की शिवलिंग की छ पैथर हम ते बड़ु पहाड़ भी दिखेण छ लग्युं।